ऊंचे-ऊंचे पत्थर दिख रहे है यहाँ पर एक हुम-एक ढाबु टापू सा बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर पत्थर ही पत्थर दिख रहे है ।